और वहां पे बाउंड्री बनाके कुछ पौधे लगाए--

इसपे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है ऊपर आकाश बादल छाए है।

डब्बे सजाए हुए हैं उस डब्बे में समान है बगल में एक सीढ़ी रखा हुआ है।